और आसमान में बादल छाए हुए हैं।

यह एक मोल है। मोल में ठंडी का समय है इसलिए स्वेटर टंगे हुए हैं। एक महिला जो टी शर्ट खरीदने के लिए खड़े है। एक लडकी भी खड़ी है।